ये एक पेपर का डब्बा है ये एक वाइट कलर का है।

इसके राइट साइड पानी भरा हुआ है इसके लेफ्ट साइड भी पानी भरा हुआ है।

इसके राइट साइड में कुछ छोटी-छोटी घासे कुछ बड़े-बड़े पेड़ हैं और उसके सामने बहुत सारी खुली जगह है।

सामने एक बड़ा-सा स्कूल का गेट है।

यहां पर रा-राइट साइड में कुछ मिट्टियां पड़ी हुई है।

ये एक बड़ा सा स्टेडियम है यहाँ पर बोहोत हल्की-हल्की घास लगी हुई है।

सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

ये और एक ही घर में एक बंद है और बिल्डिंग का कलर व्हाइट है।

सामने एक व्यक्ति है जो कि सेल्फी ले रहा है।

उसका कवर वाइट कलर का है और वो अपनी बॉडी दिखा रहा है उसने लोअर पहनी है ब्लू कलर की।

इसके राइट साइड कुछ मशीन्स रखी हुई हैं।

सामने एक वाइट कलर का बच्चों का खेलने का रखा हुआ है।

सामने के बड़ी-सी बिल्डिंग है जो की व्हाइट कलर की है यहां पर बहुत सारे बैनर्स भी लगे हुए है।

कुछ हल्की-हल्की व्हाइटस लाइट भी दिख रही है | कुछ पेड़-पौधे पर दिख रहे हैं |

एक ऑटो है जो की रेड कलर का है।

ये एक छोटी-सी गुमटी है | यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है | यहाँ पर बहुत सारे बिस्किट्स रखे हुए हैं ।

दूल्हा है जिसने येलो कलर का सूट पहना हुआ है | इसके पीछे का जो डिजाइन है वो की येलो एंड वाइट का है।

ये स्कूल है का एक फंक्शन हो रहा है यहाँ पर सामने एक बच्चा खड़ा है और बहोत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

इसके लेफ्ट साइड में दीवाल है दीवाल के ए साइड में कुछ लकड़ी के --